इस दुकान में बहुत सारी साड़ियां रखी हुई हैं और--

खाणियां बहुत ही सुंदर और अलग-अलग कलर की डिफरेंट कलर की हैं।

बस स्टैंड पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि बस का इंतजार कर रहा है।

सामने वाले ब्राउन कलर की एक दीवार है इस दीवार में एक रैक लगी हुई है।

सामने वाले दीवार जोकि सफेद कलर की है रोड बिल्कुल खाली है और एक व्यक्ति उसे रोड पे जाते हुए दिखाई दे रहा है।

सामने बार एक खंबा है इसमें लाइट लगी हुई है और पेड़ गोलाई के शेप में हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे वाले एक बाउंड्री है जो की पूरी गोलाई में और एक छतरी टाइप की लगी हुई है इसमें लोग बैठे हुए हैं।

इस शॉपिंग मॉल में बहोत सारे कपड़े टंगे हुए हैं जो कि लाल सिल्वर स्लेटी कलर के हैं।

सामने वाले ब बोर्ड पर एक फोटो लगी हुई है और लिखा है पुश योर सेल्फ एंड बी --

एल्स एंड गोइंग टू और नीचे एक और फोटो लगी हुई है माउस में लाइट चल रही है।

यह एक गांव का सीन है इसमें कुछ औरतें खाना बना रही हैं जिसमें उन्हें लाल कलर का--

और एक औरत पीछे बैठी हुई हैं और वह मसाला पीस रही हैं।

सामने वाले रोड पर एक स्कूटी खड़ी हुई है जो की सफेद कलर के दिखाई दे रही है और दीवार है।

और घास हरी भरी दिखाई दे रही है सामने वाल कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हैं।

में उसमें एक ग्रीन कलर की चादरें बिछी हुई हैं एक तकिया रखी है जो नीले कलर की है।

ब्लड सर्कुलेशन का एक डब्बा रखा है जिसमे हम लोग ऑक्सिसन गैस भरते हैं और एक ब्लैक कलर का दरवाजा है।

और इसके जस्ट बगल में एक कुर्सी की तरीके लगी हुई है इसमे लोग बैठते हैं।

यह साइकिल की दुकानों पर बहोत सारी साइकिलें खड़ी है जो कि रेंजर साइकिल है नार्मल साइकिल भी है।

सामने वाली एक दीवार पर पोस्टर चिपका है। इसमें ए वन साइकिल एटलस साइकिल लिखा हुआ है।

पुल पे नीचे डैम में सारा पानी गहरा गहरा जा रहा है सामने वॉल पुल पे--

एक आदमी और एक औरत खड़े हुए है और फोटो खीचा रहे है।

और पीछे वॉल बहुत सारे हरे भरे पेड़ फूल भरे हुए हैं।

और एक साइकल वह से आ रहीं हैं मैं और सामने वाले कुछ--

और यहां पर शैंपू लोवा के रखे हुए हैं और कुछ परफ्यूम की --'

यहां पर बहुत सारी कुर्सियों पे सभी लोग आराम कर रहे हैं बसें खड़ी हैं और--

बच्चे कुछ लोग जमीन पर बैठे हुए घास पर आनंद ले रहे हैं सामने वाल बिजली के टावर दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ बहुत ही घने दिखाई दे रहे हैं और यहां पर हरियाली ज्यादा दिखाई दे रही है।

टहल रहा है और देख रहा है कि सब एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं।